सैलून या पार्लर का सीन लग रहा है ये |

इन घड़ो पर बहुत ही अच्छे पेंटिंग से फ्लावर बनाया हुआ है जो देखने में बहुत खूबसूरत नजर आ रही है ये चिकनी मिट्टी के घड़े बने हुए हैं।

जो सीन है रेस्टोरेंट काफी अच्छा है बड़ा है इसमें फर्नीचर वगैरा भी बहुत अच्छा लगा हुआ है।

आगे के साइड जो चेयर्स पड़े है वह खाली है लास्ट वाली चेयर पर चार जने बैठे हुए हैं।

सामने हमें नृत्य भारतीय नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं यह काफी सुंदर नजर आ रहा है देखने में इन्होंने बहुत सारा मेक-अप करके रखा हुआ है।

चूड़ी वैगरह डाला हुआ है सोलह श्रृंगार करके स्टेज पर डांस कर रही हैं काफी बढ़िया है ये भारतीय नृत्य कर --

ये हमें सामने किसी नेता का घर नजर आ रहा है या किसी दुकान-उकान का उद्धघाटन करने वाले का नजर आ रहा है।

हॉल के तरह नजर आ रहा है उस हॉल में ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है।